इस चित्र में एक आदमी की तस्वीर है जहां पर एक आदमी तककिए को पकड़े बेड पर सो रहा है।

इस चित्र में एक आदमी की तस्वीर है जो हाथ में फोन पकड़े खड़ा हुआ है।

पीछे झाड़ियां है ऊपर खुला आसमान।

दुकान के बाहर बोहोत सारे चावल के मोटे रखे गए है। ऊपर की तरफ एक पिले रंग का बोर्ड है और सफेद रंग की दीवारे है।